नी आत हेमस्त दिखत हे झील झील टाइप का लगत हे कहा विदेश वाला हे कि --

इमेज दिखाव कहाँ इमेज नइ दिखात हे की ता हे एक चोकलेट बिस्किट अच्छा हे कि चौगा मन ले।

पराठा हे कि ढ़ोसा डोसा है ढ़ोसा है डोसा ले के लगत हे।